इस चित्र में एक दुकान देख रहे हैं। बिरला इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। बहोत सारे सामान रखे हैं। कूलर रखे हुए हैं।